एक बेड पर एक तकिया तथा दूसरे बेड पर दो तकिया लगा हुआ है।

रूम को सफेद एवं पीले रंग से पेंट किया गया है तथा रूम में लाइट भी लगाई गई है।

भवन के सामने दो तीन बाइक खड़े हैं एवं भवन के दरवाजे शीशे द्वारा बनाए गए हैं।

के वेंटिलेटर पर बड़ी सी खिड़की लगी हुई है तथा इस हाल में जगह जगह पर लाइटे लगी गई है।

इसके दरवाजों पर कुछ फोटो भी बनी हुई है ।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर तीन टेबल तथा छ कुर्सियां लगी हुई हैं।

सारे वर्कर लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं तथा सभी के माथे पर टोपी लगी हुई है।

पहाड़ के ऊपर से कुछ बिजली की तारें भी ये गुजरी हुई दिखाई दे रही है।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

इसके नीचे सेल्स एंड सर्विस लिखा गया है जो की सफेद रंग से लिखा गया है।

डी_जे की बगल में एक घर भी दिखाई दे रहा है जोकि आसमानी रंग से पेंट है तथा उसकी छत पर लोहे की लगी हुई है।

पार्क में दो बाइक भी खड़े हैं तथा पार्क में बहुत सारे खजूर के भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जिसकी दीवारों को सफेद रंग से पेंट किया गया है एवं इसके सामने एक मैदान भी बना हुआ है।